चने की हर तरह की कच्चा का भी दिखाई दे रही है तथा पिंड के झूर भी रखे हुए दिखाई दे रहे है मंदिर की शोभा को --

के अनुसार दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने में वो दो एक क्लोज़ली फ्रेंड्स है।

जो होली के सेलेब्रेशन को एन्जॉय कर रहे है तथा साथ ही साथ --

इस सड़क में बहुत भीड़ होने की वजह से ऑटो बाइक --

यह मैदान अभी व्यवस्थित रूप से निर्माणी कार्य --

इसके आसपास से कच्चे बाल मिट्टी से इसे जिमाया गया है तो कि जो कि सुंदर बनाने की पूरी- पूरी कोशिश की गई है यह एक --

स्थान है जो कि समायोजित किया गया है ये व्यवस्थित प्रणाली का --

जो होटल के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को सामूहिक रुषा प्रदान की गई है।

हो सकता है ये किसी कार्यक्रम के अंदर कन्याओं को दी जाने वाले --

तालाब के अंदर के पानी के अंदर खड़ा होकर वहां के पानी --

यह व्यक्ति वहां के नॉर्मल वातावरण से परिकूल है तभी वह वहां के पानी को स कर रहा है।

बाग के अंदर लगाई गई टीनशर्ट का सामूहिक चित्रण दिखाई दे रहा है उस सामूहिक चित्रण में --

जो कि सुंदर रूप दिखाई देने की वजह से बहुत सुंदरता के और प्रतीत हो रहा है जो कि व्यवस्थित कार्य पद्धति के अनुसार सुंदर दिखाई दे रहा है।

लॉबी दिखाई दे रही है जिसके पास में थोड़ी बहुत नाव भी खड़ी हुई है जो कि इसकी सुंदरता को बहुत सुशोभित कर रही है।

तथा बस में बैठकर सवारी यात्रागण यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करते है।

अति रूप में खड़े हुए दिखाई दे रहे है तथा यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है क्योकि ये बस स्टैंड की --

रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि यहां की विशाल शोभा को बढ़ा रहे हैं।

यह एक सड़क के पास का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जो हाइवे के रूप में है।

जो कि व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार दिखता है --

यह एक सयोंजित रूप से प्रणाली है जो कि समूहिक गतिविधियों के आधार पर कार्य करती है वो सामू --

ये व्यवस्थित स्थिति में नहीं हो जाने की वजह से चारो तरफ गंदगी फैली हुई है साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।

ये एक जेसीबी छोटी एस एट हंड्रेड का समुच्य तो दिखाई दे रहा है इसपे रखा कुछ मशीन से संबंधित सामान --

लड़कियां मिलकर एक नए नए रूप से रंगोली का आयोजन कर रही है तथा नए नए डिज़ाइन के आधार पर वो नए नए रंगोली बना रहे है।

तथा जिसके जाल के पड़ोस में बहुत सुंदर कलाकारी के द्वारा --

यह एक दुकान का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है इसमें भगवान के सभी प्रकार के प्रतीमा रखी दिखाई दे रहा है तथा नीचे अ --

जो कि एक समुच्यक प्रणाली के रूप से निमवर्त कार्यगत की गयी क्र कार्यक्रम है --

जिसके बाहर मैदान की घास को बड़ी सुंदर सुंदर शेप में काटकर सजाया गया है।

जो कि एक कार्य व्यवस्था प्रणाली के अनुसार तथा उसके --

प लाइन्स लाइन्स में रखे गए छोटे छोटे पेड़ पौधे उसके सुन्दर शोभा को और बढ़ा रहे है --

जिसमें से मशीनो के द्वारा बनाये गए ऑयल के द्वारा निकलने वाला प्रदूषण फैलाया जाता है तथा इसके --

कंपनी के अंदर ही प्रदूषण ना रहे कंपनी कंपनी के बाहर ये हवा वातावरण में मिल जाए।

यह एक मर्केडो नाम की कंपनी का एक सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा उमाल्या --

जोडेरी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि विदेशी कंपनियों एक फलस्वरूप है।

आइसक्रीम के आधार पर नए नए पदार्थ तैयार किये जाते हैं जो कि व्यवस्थित कार्य प्रणाली के अनुसार सुव्यस्थित दिखाई देते हैं।

ये ब्रांड बहुत महंगे रूप के उत्पादकों में दिखाए गया है क्योकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है।

ये एक ऑफिसके अंदर का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा जिसपर वहा बैठे हुए है व्यक्ति --

एक सलून की दुकान दिखाई दे रही है सलून के अंदर एक महिला बैठी हुई है तथा --

रॉयल एनफिल्ड एक बहुत बडा ब्रँड है जो ब्रँड अम्बॅसिडर से आता है ब्लॅकबेरी रॉयल एनफिल्ड लिजॉर्डीय सब बहुत बड़े बड़े ब्रँड है।